यह मैदान चारों ओर से घेरा गया है।

जो की टी.वी. का कार्य करती है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं।

यहां पे काफी सारी कुर्सियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

तथा खंबे पर भी यहां लाइट जल रही है।

एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

यह सभी लोग छठ पूजा का महापर्व मना रहे है।

पीले और गुलाबी रंग के पर्दों से सजाया गया है तथा लाल सफेद रंग के फूल लगाए गए हैं।

दो लड़कियां हैं तथा एक व्यक्ति ने यहां चश्मा पहना हुआ है।

पौधे भी दिखाई दे रहे हैं तथा आसमान में काले बादल दिखाई दे रहे हैं।

इस पे एक पानी चम् चम् चमक सा रहा है तथा यहा --

यहां पेड़ बहुत ही ज्यादा गने हैं।

यहाँ पे लोग पैसे निकलवाने के लिए लाइन से खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

जैसा कि मैं देख पा रहे हैं यहां पर एक बहुत ही प्यारा सा झरना है तथा वो झरना का पानी नीचे --

काफी सारे पंखे लगे हुए हैं तथा यहां पर काफी सारी --

खड़े हुए बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं सबने ठंडी के कपड़े पहने हुए।

बहुत सारे घास फुस चट्टानों के ऊपर दिखाई दे रही है।

इसका नाम इंडियन ऑयल है यहाँ पे पेट्रोल भरवाने डीज़ल भरवाने तथा --

इंजीन ऑयल के लिए लोग आते है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे मुझे बहुत ही ज्यादा --

अंधेरा और कुछ जगह उजाला दिखाई दे रहा है।

यहा पे मारुती सुज़ुकी हीरो हौंडा --

यह बहुत ही वैल्युएबल है।

तथा यह दरवाजा चॉकलेट रंग का है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं।

यहां पे नीले रंग का एक कूड़ा दान भी दिखाई दे रहा है।

यह संतरी और लाल रंग की है।

यहां पर थोड़े बहुत पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

जैसा कि मैं देख पा रहे हैं यह लड़कियों के लिए ब्यूटी पार्लर तथान है।

फोटो चिपके हुई दिखाई दे रही हैं।

कुर्सियां काले रंग की रखी गई हैं।

यहा पे समुन्द्र का दोनों किनारा काफी पास से होता हुआ काफी दूर की और जा रहा है तथा समुन्द्र के बीच में थोड़ी सी घास फुस उगी हुई है।

सारे बच्चे अपनी योग्यता अनुसार मॉडल बना रहे है।

घर से नीचे आने के लिए यहां पर सीलियां भी बनी हुई दिखाई दे रही।

यहां पे लोग नमाज पढ़ने आते हैं।

यहां पे अभी तीन व्यक्ति खड़े हुए हैं।

यह बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है।

यहां बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।